नींबू टमाटर गाजर धनिया पत्ता बैगन कुकुम्बर और लौकी भी रखा हुआ है।

और एक पीली रंग की कार भी दिखाई गईं हैं।

यहाँ पर पेड़ का दृश्य भी दिखाया गया है।

सभी गाए को बांस से बांधा गया है।

शॉप के बाहर एक साइकिल और एक स्टूकुटी भी दिखाई गयी है।

यहां पर होटल का दृश्य दिखाया गया है जिसमें दो आदमी कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर दो घरों का दृश्य दिखाया गया है और पीछे एक मंदिर भी है।

तीन बाइक भी खड़ी हैं।

इसमें से एक का कलर स्काई है।

यह एक बरांडा है जिसमें बहुत सारे रूम भी दिखाए गए हैं।

यहां एक बहोत सुंदर जगह दिखाई गई है जिसमें दो चेयर और एक लंबी टेबल रखी हुई है।

एक ब्रेंच पर एक लड़का बैठा हुआ है।

क्लासरूम में पंखे बोर्ड और लाइट भी लगे हुए हैं।

और कुछ लोहे के सामान सीधे और डिजाइन भी किए हुए नजर आ रहे है।

रेस्टोरेंट के पीछे बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

घर में बहुत सारे रूम दिखाए गए हैं।

एक मे इंग्लिश से और एक में हिंदी से लिखा हुआ है।

यहां एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है। जिसका नाम एच_डी_एफ_सी बैंक है।

यह एक स्टेशन दिखाया गया है जिसका नाम चित्र चितरंजन स्टेशन है।

एक आदमी नीचे बैठा हुआ है।

एक मैम खड़ी हैं जिसने ग्रीन कलर का साड़ी पहना हुआ है हल्के में।